इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हम देखते हैं कि डाइरेक्टरी में इमेज्स को कैसे सूचीबद्ध करना है
यह ट्यूटोरियल में फाइल्स को सूचीबद्ध करना और एचटीएमएल कोड को एक इमेज टैग के उपयोग के लिए बदलना ताकि डाइरेक्टरी में सूचीबद्ध इमेज्स को एको कर सकें
परिणाम कुछ इस तरह से नज़र आएगा
मैंने 8 इमेज बनाई हैं और यह इस तरह से पेज पर सूचीबद्ध होंगे
यह सारे अलग अलग इमेज हैं
मैं दिखाता हूँ कि मैं अपनी डाइरेक्टरी की संरचना कैसे सेट की है यह इस प्रकार से है
मेरे पास शो डॉट पह्प फाइल है जिसके साथ हम काम करेंगे
और मेरे पास मेरा इमेज्स फोल्डर है और इसमें इमेज्स सूचीबद्ध हैं जैसा कि दिखाया गया है
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन से फॉर्मेट में हैं
यह मिश्रित फॉर्मेट हो सकते हैं या कोई एक फॉर्मेट और एचटीएमएल वाली कोई भी डिस्प्ले या इमेज फाइल चलेगी
अतः यहाँ हमारी शो डॉट पह्प है
और फिलहाल यह खाली है
हमें अपनी पह्प टैग्स की आवश्यकता होगी
पहला काम हम यह करेंगे कि अपनी इमेज्स वाली डाइरेक्टरी के साथ एक वेरिएबल सेटअप करेंगे
और जैसे कि मैंने पहले दिखाया यह इमेजेस है और यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं
चिन्हों का ध्यान रखें जैसे कि बैक स्लैश
यह विशेष अक्षर हैं जो बैक स्लैश के बाद आने वाले अक्षर को हटा देता है
अतः उदाहरण के लिए यदि आपके पास इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश फोटोस है तो यह पह्प को images होटोस लिखेगा क्योंकि यह अक्षर यहाँ प को हटा देता है
अतः ध्यान रखें कि आप फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करें और हाँ यहाँ ये फोटोस नहीं हैं
अब हमें ओपन दिर फंक्शन का उपयोग करना है
यह हमारे लिए डाइरेक्टरी को ओपन करेगा
यह डाइरेक्टरी के कंटेंट्स नहीं होगा
यह एक विशिष्ट डाइरेक्टरी ओपन करेगी यानि यह डाइरेक्टरी
अतः इसे ऐसे ही रखने के बजाय यदि हम लिखते हैं इफ ओपन दिर इक्वल्स टो ओपन दिर नामक एक नई वेरिएबल और दिर
अतः हम इससे इसको मैच कर रहे हैं
वास्तव में यह क्या करता है कि यह कहता है यदि यह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है और फिर हमारी ओपन डाइरेक्टरी को ओपन दिर निर्दिष्ट करेगा ताकि बाद में हम इसमें बदलाव कर सकें
हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि आपकी डाइरेक्टरी मौजूद नहीं रहती हमें काफी सारे कोड और एरर मिलेंगे
यह यहाँ कहता है यदि कोई एरर नहीं हैं और फिर हम इसके भीतर कोड और अपने ब्लाक के साथ आगे बढ़ सकते हैं
ओके अगला थोडा सा कठिन है
चलिए इसे ऐनोटेट करते हैं
यह डाइरेक्टरी ओपन करने के लिए है
और इसके भीतर हम लिखते हैं रीड दिर डाइरेक्टरी को पढ़ने के लिए
और यह हम व्हाइल लूप के साथ करेंगे क्योंकि व्हाइल लूप के आस पास प्रत्येक लूप के लिए हम एको करना चाहते हैं या इमेज की प्रत्येक इमेज फोल्डर के बीच प्रदर्शित करना चाहते हैं
अतः हम अपने व्हाइल लूप के साथ शुरू करेंगे
हम वह बनाएँगे जो इसमें रहेगा और यहाँ हमारे कोड का ब्लॉक है जिसे हम अपने व्हाइल लूप के लिए निष्पादित करेंगे
ओके इसके लिए हम क्या करते हैं यदि फाइल इक्वल्स रीड डायरेक्ट्री यह नया फंक्शन है जिसे मैंने अभी परिचित कराया है
और आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आपको इसके भीतर ओपन दिर वेरिएबल टाइप करना है
अतः यह मूलतः डाइरेक्टरी पढ़ने के लिए है जिसे हमने ओपन दिर फंक्शन का उपयोग करके पहले ही ओपन किया था
अतः यह दोनों काफी उपयोगी फंक्शंस हैं जिसे हम एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं
और फिरसे हम यहाँ इसे मान्य करेंगे और कहेंगे यदि यह फलसे के समान नहीं है या यदि यह समान नहीं है या यदि यह नहीं खुलता है या यदि यह नहीं पढ़ा जा सकता है इसका मतलब है हम बाद में कुछ एरर्स रन कर सकते हैं
और अब हमें संरचना को शुरू करना होगा
हमें इसे कोष्ठक में डालना है
अतः इसे कोष्ठक में डालते हैं
ओके तो यह हमारा पूरा व्हाइल स्टेटमेंट होना चाहिए
अब इसके भीतर इसे करने का एक आसान तरीका है क्योंकि हमने यह फाइल वेरिएबल बनाई है
और हम इस व्हाइल लूप के भीतर हैं इसलिए यह इस डाइरेक्टरी में मौजूद सभी फाइल के लिए अपडेट करेगा
अब हम लिखते हैं एचो फाइल और इसके अंत में बीआर जोड़ना चाहेंगे
अब यदि हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि हमारी सभी डाइरेक्टरी सूचीबद्ध हैं
डाइरेक्टरी सूचीबद्ध करने पर कुछ और ट्यूटोरियल्स हैं
मुझे लगता है मैंने पहले ही बताया है
यहाँ डॉट और डबल डॉट हैं
यह डाइरेक्टरी संरचना के लिए मानक चिन्ह हैं
डॉट वर्त्तमान डाइरेक्टरी है दो डॉट्स वापस जाने के लिए और ऐसा ही कुछ
लेकिन हमें अब लूप के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी यह ध्यान में रखने के लिए कि हम इस डॉट और पूर्णविराम को एको न करें - माफ़ कीजिये इन दो डोट्स को
इसका कारण है यदि हम इन्हें इमेज के रूप में दर्शा रहे हैं यह वास्तव में एक इमेज नहीं है और यह भी असल में इमेज नहीं है
अतः इसे हमें हटाना होगा
तो मैं क्या करूँगा मैं लिखता हूँ फाइल डॉट के समान नहीं हैं इफ फाइल डोएसेंट इक्वल डॉट और हमें ओर की जगह एंड की ज़रूरत है और फाइल डॉट डॉट के समान नहीं हैंफाइल डोएसेंट इक्वल डॉट डॉट अतः जैसे ही लूप करते हैं यह कहता है कि क्या यह इसके समान है160
पहले केस में यह हाँ होगा इसलिए हम अपने इफ के भीतर इस स्टेटमेंट को हटा देंगे - हमारे इफ स्टेटमेंट के भीतर की कमांड
और साथ ही हम इसके लिए भी जाँच कर रहे हैं अतः दोनों ट्रू होंगे
अब हम रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि यह गायब हो गए हैं
अगली चीज़ हमें जो करनी है वह है इस फाइल वेरिएबल में फेर बदल ताकि वास्तव में एक इमेज बनें
अतः में इन्हें हटा देता हूँ और ओमनी वर्ड के रूप में कुछ एचटीएमएल कोड लिखेंगे
अतः यहाँ इमेज सोर्स इमेज सोर्स किसी के समान है
आप हाईट और विड्थ स्पष्ट कर सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी इमेज में पहले से ही हाईट और विड्थ सेट किए हैं
यदि आपके पास विभिन्न साइज़ के इमेज हैं आप उन्हें समान साइज़ में रखना चाहेंगे और फिर उन पर हाइपरलिंक ताकि व्यक्तिगत रूप से उन पर क्लिक करके देख सकें
यह काफी सरल और सीधा है और इसे करने के लिए पह्प कोड बताता हूँ
और फिर प्रत्येक के बाद ब्रेक लिखेंगे
आप सोच रहे होंगे कि यह फाइल डालेगा लेकिन जब रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं कि हमें टूटी हुई इमेज मिली हैं
इसका कारण है यदि मैं प्रॉपर्टीज क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं हमने कहा है डायरेक्ट्री इमेजेस और इमेज 1
यहाँ हमें इमेज्स डाइरेक्टरी की आवश्यकता हैं
अतः हम इमेजेस लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए पहले से ही वेरिएबल है जो है दिर
हम कहते हैं दिर फॉरवर्ड स्लैश फाइल अतः यह इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश फाइल होगा
अब जब रिफ्रेश करते हैं आप देखते हैं कि वह पेज पर वापस आए हैं जिसे मैंने ट्यूटोरियल की शुरुआत में बताया था
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही
चीजों को करने के कई अन्य तरीके हैं
आपको कोई भी कठिनाई है तो कृपया मुझसे संपर्क करें
आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी
यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद